अ कुछ लड्डु दिखाए गए हैं कुछ स्वीट्स दिखाए गए हैं कुछ--

अ मिठाई के अम्म भ बहोत सारे आइटम दिखाए गये है निचे में कुछ पिक्चरस --

और आगे में बहत कोने साइड में दो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है निचे सिमेंटेड है फरस दिखाया गया है रेड कलर में हल्का चोकलेट कलर --

एक बैंक ए_टी_एम को दिखाया गया है जिसके बाहर में एक लोग खड़ा--

कुछ छोटे छोटे प्लांटस फ्लावर लगे हुए बगल में पि_पि_ए _पि डॉट कॉम --

एस_बी_आई बैंक को दिखाया गया है जिसमें ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसमें व्हाइट कलर से एस_बी_आई --

और ऑरेंज कलर की माला पहने हुए है कुछ आर्टिफिशियल माले भी दिखाए गए हैं ऊपर में डेकोरेट किया गया है व्हाइट --

रेस्टोरेंट टाइप का देखाया गया है जहा पर एक लड़की चेयर पे बेठी हुई है।

अ ग्रे कलर का फुल पेंट पेहने हुए है उपर में आसमान दिखाया गया है।

प्लेट दिखाई गई छोटी सी ब्लैक कलर की कटोरी है जिसमे चटनी सर्फ़ किया गया निचे मार्--

कुछ रेस्टिंग एरिया है जेसा भी दिखाया गया है उपर में आसमान दिखाया जा रहे है।

पीछे साइड में व्हाइट कलर का कुछ घर टाइप दिखाया जा रहा है और सामने में रेड कलर में घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और सामने में रोड चलती हुई सड़क जैसी दिखाई दे रही है।

कुछ चीरचंडी मछली टाइप की कुछ प्लास्टिक में रखी हुई दिखाई जा रही है जो की प्लास्टिक --

एक झोला रखा हुआ है जोकि वाइट एंड रेड कलर में है एक आदमी है खड़ा जिसका फेस को हाईड किया गया है वो वाइट कलर का फुल हैण्ड शर्ट पहना है सामने में --

लोग टोटो के सामने में फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाई जा रहे हैं ऑटो न्यू सी दिखाई जा रही है पीछे का--

जिसे बाहर का एरिया दिखाया गया है जिसके बाहर में उपर में--

एक महाजित को दिखाया गया है महाजित जो भी पूरा वाइट कलर का दिखाया गया है बाहर कुछ ग्रीन कलर छत दिखाई जा रही है निचे में मार्बल के--